जो देखने में बहुत बकवास तो लग रहा है जो बहुत बढ़िया है और पन्नी में है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है थोड़ा-थोड़ा बहुत खराब ---